छात्र इस दुकान से विभिन्न अध्ययन संबंधी सामग्री खरीद सकते हैं।

इस तस्वीर में हम स्पा या बाल काटने की जगह की एक छोटी सी दुकान देख सकते हैं।